ये पहाड़ काफी बड़े-बड़े नजर आ रहे हैं यहाँ पर टाइम पानी भी बेहेती हुई नजर आ रहे हैं जो काफी साफ सुथरा लग रही हैं यहाँ पर ऊपर पहाड़ से से पानी गिरते हुई नजर आ रहे हैं।

ई एक होटल नज़र आ रहा है ये होटल काफी सुंदर नज़र आ रहा है ये होटल काफी बड़ा भी दिख रहा है।

ये काफी सुंदर लग रहा है काफी इंट्रेस्टिंग लग रहा है देखने में यहां पर बीच में एक उम्म एक प्रतिमा रखी हुई है जिसकी चारों ओर बड़ा गोलंबर रखे --